रूम में आईने लगे दिख रहें हैं कुछ रैक्स बने दिख रही है एक टॉवल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने दो लड़कियां फोटो लेती हुई नजर आ रही है एक लड़की के हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है पीछे एक लड़का बाइक में नजर आ रहा है।

सामने एक सरकारी कार्यालय नजर आ रहा है लोगों की भीड़ बाहर दिखाई दे रही है एक --

सामने एक लड़का पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है आस-पास में पहाड़ नजर आ रहे हैं।

सामने एक लम्बी सी सड़क जाती हुई दिख रही है जिसके दोनों किनारों पे लंबे-लंबे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।